यहां पर एक मार्केट दिख रहा है जिसके ऊपर एक लाल रंग की सीढ़ियां गई हैं और नीचे--

वहां पर कुछ दीवारें बनी हुई है और ऊपर की ओर एक खंभा भी है। यहां पे एक गाड़िया भी खड़ी हुई है और नीचे पूरा मैदान हुआ हैं।

ऊपर पोस्टर लगा हुआ है और यह दो फ्लोर की बिल्डिंग लग रही है।

यह पूरा मैदान दिख रहा है जहां पर बड़ी ही--

और यहां पर छोटे छोटे पौधे भी लगाए गएं हैं जैसा कि यह लग रहा है कि--

यहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे भी रग रखे हैं।

यह कोई बारात का सीन लग रहा है यहां पर--

बगल में एक हरी बिल्डिंग भी देख बड़ी बनी हुई है।

यह एक गाड़ी सर्विसिंग की एजेंसी लग रही है जहां पर एक गाड़ी--

गुलाबी फूल नीले फूल सफेद फूल दिख रहे हैं बगल में एक--

यहां पर एक सामने ट्रक भी खड़ा हुआ है और केले का पेड़ भी लगा हुआ है फैक्ट्री पूरी टीन से ढकी हुई है नीले रंग की टीन बनाई गई है।

यह एक शादी का सीन लग रहा है जहां पर अंदर एक मैरिज हॉल --

यह एक मस्जिद का सीन है जहां पर ऊपर माइक लगा हुआ है और आसमान बिल्कुल नीला दिख रा--

एक कैरट कैरेट भी रखा हुआ है जिसमें बाकी दवाइयां भी हैं।

यह एक रेलवे लाइन की पटरी है जहां पर नील छतरी पर दो कुर्सियां रखी हुई है।

यह एक गांव का सीन है जहां पर बाहर--

यह एक रेलगाड़ी का दृश्य है जो रेलगाड़ी पटरी पर खड़ी हुई है और उसके बगल खंबे लगे हुए हैं।